इस चित्र के अंदर हमें एक मस्जिद --

इस चित्र के अंदर हमें एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

बाहर टेबिल और चेयर लगी हुई है।

और यहां पर काफी सारे व्यंजनों की फोटो लगा रखी है।

पीछे एक लक का एक लोहे का गेट भी दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक सफेद इमारत दिख रही है।

इसके अंदर काफी सारे कमरे और दरवाजे भी खिड़कियां भी दिख रही हैं।

यहां पर बहुत खूबसूरत सी एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई हैं।

एक कोका कोला का पोस्टर दिख रहा है।

आसपास हरी-हरी बहुत सारी घास भी दिख रही है।

इस चित्र के अंदर हमें एक घर दिख रहा है।

लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी अलमारियें बनी हुईं हैं।

उसके अंदर बहुत ही सारी किताबें रखी हुई हैं।

और यहां पर कुछ मजदूर भी खड़े हुए दिख रहे है।

उसके नीचे दो बाल्टियां रखी हुई है।

यहां पर सड़क भी दिख रही है।

इस चित्र के अंदर हमें एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही है।

जिसके अंदर बहुत सी खिड़कियां लगी हुई हैं।

उसके ऊपर एक बैनर लगा हुआ है उस पे लिखा है।

उसने वाइट टी-शर्ट और ब्लैक पेंट पहनी है।

कार के अंदर दो झंडे लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक उन्होंने बैनर भी लगा रखा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक मस्जिद दिख रही है मस्जिद के अंदर लाल कलर की जालियाँ बिछी हैं बाहर के एरिए में --

और छोटे बच्चों के भी कपड़े टंगे हुए हैं।

नीचे वाइट कलर का फर्श भी दिख रहा है।

बाहर कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

कुछ दूर देखने पर बड़े बड़े पौधे भी दिख रहे हैं।

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारे फ्लावर दिख रहे हैं।

और यहां मैदान भी पड़ा हुआ है।

और इसके ऊपर इसका बैनर लगा हुआ है इसे वर्धमान पार्क --

कैमरे भी लगे हुए दिख रहे हैं।